इसके सामने ही एक छोटा सा मकान है मकान के गेट का कलर व्हाइ--

एक बेड भी लगा हुआ है।

सामने एक सफेद कलर का गेट है।

यह एक दुकान है जिसमें कुछ शेरवानियां रखी हुई हैं इसमें दो शेरवानियां दिखाई दे रही हैं।

उसने लाल रंग की शर्ट पहनी है।

यह एक क्लास रूम की पिक्चर है।

और सामने ही कुछ गमले पड़े हैं इन गमले में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

और साथ में एक टीचर खड़ा है।

इस पिक्चर में दो दुकानें दिखाई दे रही हैं दोनों दुकानों के शटर बंद हैं।

उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है आस पास में बहुत सारे पेड़ पौधे--

इसके अंदर बहोत सारी किताबें पड़ी हैं ये किताबें सभी अलग अलग विषयों की हैं।

इन किताबों के ऊपर एक और--

यह एक बिल्डिंग है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

उसने क्रीम कलर की टी शर्ट पहनी है।

उस बिल्डिंग के पीछे एक टावर लगा हुआ है।

चबूतरे के बीच में एक जगह कच्ची है।

यह एक मकान की पिक्चर है जिसका सिर्फ गेट शो हो रहा है इसके साथ ही सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

इसके पास ही एक तार पड़ी है।

गेट के ऊपर एक चक्र बना हुआ है।